यह एगो ग्राउंड बानी | इ ग्राउंड मै स्टूडेंट कॉलेज के आएल बानी और पढ़ाई कर रहे हैं |

यहाँ पर एको गार्डन बनाएल गएल बानी | इ गार्डन पर बहुत सारी हरियाली लगी है और इस --

यहाँ एक बड़ी रासन की दुकान बानी | इस दुकान के सामने बहुत सारी सब्जियों की बोरिया भी रखी गई है बेचने के लिए और इधर कुछ लोग आये हुए हैं जो की यहाँ पर --

और बढ़िया तरीके से दुकान बनाई गई है और यहाँ पर बहुत अलग-अलग प्रकार के बाल बनाये जाते हैं |